जैसे संजय चंद्रवंशी चला रहे हैं।

पिक्चर में एक रोड दिखाई दे रही है।

सामने एक फ्लाई ओवर दिखाई दे रहा है यहां एक डिवाइडर भी बना हुआ है।

परम दृश्य दिखाया जा रहा है।

इमारत का नाम मित्तल बुक डिपो है।

जो यूरोलॉजी कार्डियोलॉजी आई_बी_पी और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट के लिए प्रसिद्ध है।

यह मंदिर जयपुर में स्थित है।